रखा हुआ दिखाई दे रहा है वो मंदिर ऐसा लग रहा है जैसे पत्थर से बनाया हुआ है बहोत अच्छे डिजाइन लग रहे छोटे-छोटे --

कुछ लोग एक पेड़ के नीचे खड़े नजर आ रहे हैं कुछ बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

एक मकान दिख रहा है उसके ऊपर ताल छपरना लिखा हुआ है एक कुलर नजर आ रही है और कुछ --

और उसके आगे एक कुंकू पत्री भी चटाई हुई है उसके आगे एक थाली रखी हुई है एक पानी का --

और पुजारी जी पास में खड़े दिखाई दे रहे है।

और नीचे रेड कलर की धोती पहनी हुई है और --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

उस बड़े बड़े पाइप नजर आ रहें जो ब्लैक कलर के दिखाई दे रहे हैं और कुछ सामान बक्सों में रखा हुआ नजर आ रहा --

आसमान बहुत अच्छा दिख रहा है मौसम बहुत बढ़िया दिख रहा है पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे --

गेट दिखाई दे रहा है वो बंद भी--

रेडीमेड कपड़े पहने हुए कुछ आदमी के फोटोस आ रही है और एक आगे कैंपर रखा--

पेड़ दिखाई दे रहे हैं पास में एक रोड दिखाई दे रही रोड के ऊपर एक ऑटो जाता हुआ नजर आ रहा--

रेलवे स्टेशन नजर आ रहा है।

जुड़ा हुआ है गमले के अंदर--

एक दुकान नजर आ रही हैं दुकान मे--